पीतल के बड़ा सा एक पीतल का पतीला है उसके ऊपर मे कुछ छोटे छोटे चार पंच पतीले और रखे हुए हैं।

पहाड़ है इसमें अ बहोत सारे पेड़ वेड लगे हुए हैं।

और एक पार्क जैसा बना हुआ है कुछ--

ये आप कुछ डैम देख रहे हैं जहां से पानी निकलता हुआ दिख रहा है और कुछ ठहराव पानी भी है।

पीला कलर का बिल्डिंग हम देख रहे हैं एक--

दो घर है जिसमें लाल कलर की पट्टीया हैं।

एक गाड़ी भी वहां रखी हुई है टू व्हीलर ।

यह एक गेट है जो स्लाइडिंग गेट हैं।

वहां पे नीला कलर का शर्ट पहने लड़का एक है।

एक लड़की चेयर मे बैठी हुई है ।

अ सामने में एक प एक पोस्टर भी लगा हुआ है तनिष्क का।

सोफा है यहां पे लाल और काला कलर के तकिए रखे हुए हैं।

वहीं पे सफेद कलर के गद्दों पे कुछ बच्चे बैठ के कुछ ड्राइंग कर रहे हैं।

आ गेट है फूलों से सजा हुआ।

लो और पिंक वाइट कलर का पंडाल है ये।

ग्रीन दो तीन पेड़ है हरा रंग के ।

दूर में एक लाल कलर का पूल भी दिख रहा है यहां लाइट है।

कैमरा मैन इसको कैच कर रहा है।

ये इसमें आप देख सकते हैं कि कुछ एक परिवार है।

कलर की गुलाबी कलर की साड़ी पहनी हुई महिला खड़ी है।

एक नीला कलर पहना हुआ बच्चा को गोदी में लिया हुआ एक--

तो ये छोटा सा आंगन हम देख सकते हैं जहां--

ये पानी कितना अ क्लीन अ एकदम सफ स्वच्छ और सफेद दिख रहा है।

चांदी के भगवान जी यहां रखे हुए हैंजैसे कि साईं बाबा हैं।

कुछ टॉयलेट की कुछ सीट्स रखी हुई हैं।

और टेबल के ऊपर गुलाब अ लाल कलर का गुलाब रखा हुआ है।

दिव्या प्रभा फैंसी साड़ी लहंगा एक बोर्ड लगा हुआ है।

वही पे एक गद्दा है। स्टूल्स है कुछ।